ये एक म्यूजियम है और यहां पे कांच के अन्दर अ पांच मुर्तिया है जो बहुत सुन्दर है और बहुत डीफ्रेंट अ टाइप का है।

बहुत बड़ा रूम है और ये एक ऑफिस है खाली ऑफिस जहाँ पे टेबल है और यहाँ पे टेबल है चेयर है और मतलब डेस्क टाइप का है।

और ये सब जीम करने का मशीन का कलर कांबिनेशन येलो और ब्लैक में है और फ्लोर बहुत क्लीन है।